और यहां पे आप देख सकते हो चारो तरफ हरियाली ही हरियाली दिख रही है।

ये फूलों की माला दिख रही--

ये गुलाबी रंग की स्टेज है और यहां पे लाल रंग का कपड़ा भी--

यहां पे करेला केरला होटल लिखा हुआ है।

यहां पे दो दो बाइक खड़ी हुई है।

यहां पे आप देख सकते हो सी फोर लिखा हुआ

और यहां पे सी_ए_ए लिखा हुआ है।

तुम देख सकते हो यहां पे एक लुगाई बैठी है और यहां पे आप देख सकते हो --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

वाटर कूलर रखे हुए हैं यहां पे।

और यहां पे आप देख सकते हो झाड़ियां दिख रही हैं।

और यहां पे ये आदमी खड़े हुए हैं।

यहां पे कपड़े कपड़े रखे हुए जेंट्स कपड़े हैं यहां पे--

कॉम कॉम्प्लेक्स नियर अशोक चौ चौक।

जहां चारों तरफ हरियाली ही हरियाली दिख रही है।

यहां पे आप देख सकते हो ये ऊपर आसमान हैं यहां पे--